और गेट में फूल माला से सजाया गया है और दीवार में बहोत--

और फाइबर बहोत है और फाइबर प्लेट भी बहोत है।

घर है और एक ठो बड़ा सा दरवाजा है एक ठो--

एक ठो कवर है कवर के अंदर बहोत सारे तेल का गिलन है।

पत्थर ब्लैक कलर की है एक ठो लड़का खड़ा हुआ है रेड कलर गंजी पहने हुए--

उनके पास में एक है येलो कलर की एक ठों ब्लैक कलर की चाल रही है।

अ साइड मे एक बड़ाटा बड़ासा पीपल का गज हैं।

और पेन रखा है दीवाल पर ए_सी लगी है।